औटो का कलर येल्लो और ब्लैक है। उसके साइड मे कुछ लोग खड़े हुए है। ईसपे हमे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ासा टावर दिखाई --

इसमे हमे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के बगल मे एक गाव बसा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमे हमे बहुत सारे ऑटो गाड़िया और एक लोडिंग --

एक जोड़ चप्पल और एक पोछा दिख रहा है।

हे किसी प्ले ग्राउंड की इमेज है ईसमे प्लेयर्स प्ले खेल रहे है इसमे एक तिरंगा लगाने का जीना लगा हुआ है सूरज निकल रहा है।

ये किसी पार्क की इमेज है इस इमेज मे बहुत सारी घसर पट्टिया बनी हुई है इन इमेज मे बहुत सारे बच्चे है जो की इनमे खेलने आए हुए है।

यहाँ पर हमे तीन लोडिंग गा-लोडिंग गाड़िया जैसी दिखाई दे रही है जोकि म्ह ट्रक जैसी भी है कार जैसी भी है और ए जो लाइन से खड़ी हुई है एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

ये भी पोस्ट ऑफिस की इमेज है इसमे पोस्ट ऑफिस का एक बड़ा सा बैरन और उसका राईट का निशान लगा हुआ है उसमे एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है एक गेट --

दिखाई दे रहा है और एक हं बोर्ड लगा हुआ हैं जिसके नीचे ओम लिखा हुआ है।

पर्पल कलर का पर्दा लगा हुआ है जोकि आधा खुला है और आधा बंद है उसके अंदर ट्यूबलाइट लगी हुई है और बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए है।